और बड़े-बड़े दो-चार पेड़ दिख रहे हैं।

और इसमें बहुत सारे टेबल कुर्सी लगे हुए हैं।

और ऊपर आसमान दिख रहा है नीचे दो कार खड़ी हुई है बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं और जाली का गेट लगा हुआ है।

इस चित्र में मुझे आलू प्याज की और एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें आलू प्याज और बहोत सारी बोरियां रखी हुई हैं।

ऊपर आसमान नज़र आ रहा है और तालाब के उस पार बहुत सारे घर दिख रहे हैं।

इस चित्र में मुझे एक खाली मकान दिख रहा है।

और बहुत सारी मोटरसाइकिल जो सही होने के लिए खड़ी हुई हैं।

और दीवारें दिख रही हैं जिस पे--

के चित्र दिख रहे हैं बाहर पॉट रखे हुए हैं स्टूल रखा हुआ है।

मुझे इस चित्र में एक गार्डन दिख रहा है जिसमें बहुत सारे टेबल कुर्सी लगे हुए हैं।

इस चित्र में मुझे एक ऑफिस दिख रहा है जिसमें बहोत सारे कुर्सी टेबल रखे हुए हैं और लोग मीटिंग कर रहे हैं।

इस चित्र में मुझे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसके अंदर बहुत सारी लाइटें जल रही हैं और बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई हैं।

और एक रोड दिख रहा है ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।

और ऊपर छत है उसकी नीचे जमीन बनी हुई है पेट्रोल पंप है बस इतना ही दिख रहा है इसमें तो मुझे और पेट्रोल पंप का पाइप --

और बहुत सारे बैठने के सामान रखे हुए हैं बहुत सारे कपड़े के बॉक्स रखे हुए हैं।

इस चित्र में मुझे एक पुलिस स्टेशन दिख रहा है और बहुत सारे पुलिस कर्मचारी खड़े हुए हैं।

और बड़ा सा एक टंकी दिख रही है और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जिसमें बहुत हरे भरे --

इस चित्र में मुझे एक बहुत बड़ा मीनारा दिख रहा है बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं बहुत बड़ा आसमान दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे अपना आइसक्रीम पार्लर दिख रहा है।

और बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ है मोटरसाइकिल है बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

बहुत सारी तगाड़ी उठाए हुए हैं गिट्टी पड़ी हुई है।

इस चित्र में मुझे एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जिसमें--

इस चित्र में मुझे एस-बी-आई बैंक दिख रही है।

और ऊपर बहुत सारी पत्तियां लगी हुई है पेड़ की और बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं एप्पल बनाना पपाया --

एक जिम दिख रहा है जिसमें एक आदमी जिम कर रहा है बहुत सारे जिम --